साइड में एक रास्ता भी है जो पीछे की तरफ़ जाता है इसमें एक ए.सी. का बोर्ड लगा हुआ है नीचे स्टेअर्स बने हुए हैं।